जिसमे ऊपर में कट्रैल लगा है।

और एक टूटा नल दिखाई दे रहा है और सामने में बाउंड्री दे रा--

यह एक स्टेशन है जिसमें बहोत सारे पिलर दिखाई दे रहे हैं।

और ऊपर में एक छोटा पंखा दिखाई दे रहा है ।

बहोत सारे आदमी यहाँ पर देख रहे हैं मेले को--

यह एक मॉल है जिसका नाम अल्ट्रा प्रेस लिखा गया है ।

जो हाथ में लाल रंग का कुछ डब्बे लिए हैं।

और एक हाथ मे कुस गुलाबी रंग का है जो हाथ में कुछ लाल रंग का लिया है।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

जिसके ऊपर बहोत बड़े-बड़े लाइट और छोटे-छोटे लाइट दिखाई दे रहे हैं जो काले और सफेद रंग के दिखाई दे रहे हैं।

सामान नीचे में है और एक काला रंग का टेबल दिखाई दे रहा है और कुछ पेटी दिखाई दे रहा है और एक पानी का डब्बा दिखाई दे रहा --

जो स्वेटर पहना हुआ है और सर पर टॉपी लिया है।

और गेट का रंग बिल्कुल नीला और सफेद रंग में दिखाई दे रहा है।

और स्कूल के अंदर बहोत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं जो हरे भरे--

जो पीले रंग का है और सफेद रंग का और यहां पर एक जग दिखाई दे रहा है जिसके अंदर पानी है और तीन गिलास दिखाई दे रहा है जिसमें--

और सामने में एक काला रंग का बैग दिखाई दे रहा है और एक व्यक्ति खड़ा होके--

और ऊपर में एक सफेद रंग का छोटा पंखा दिखाया दे रहा है।

फूल का रंग बिल्कुल लाल सफेद में दिया गया है और नीचे में बहोत सारे पिलर हैं।

और पीछे में बहोत सारा घर दिखाई देरा है.

यहाँ पर एक बहोत बड़ा कछुआ दिखाई दे रहा है जो घायल दिखाई दे रहा है।

उसके ऊपर धारी-धारी कुछ बने हुए दिखाई दे रहे हैं ।

कुछ घास हरे भरे पूरे दिखाई दे रहे है।

कछुआ का मुंह बिल्कुल छोटा दिखाई दे रहा है।

और बहोत सारा स्प्रे दिखाई दे रहा है जो चार पांच रंग का दिखाई दे रहा है।

जिसमें डमी के ऊपर कपड़ा पहनाया गया है जैसे हरा और काला रंग का--

सफेद रंग का नीला रंग का साधा रंग का--

बहोत सारे लाइट दिखाई दे रहे हैं जो सफेद रंग के और ए_सी दिखाई दे रहे हैं।

दो आदमी बैठकर बातें कर रहे हैं।

बहोत सारे आदमी गाड़ी पे बैठकर जा रहे हैं और एक सफेद रंग का गाड़ी है और ऊपर से बीच पार हुआ है जिसका रंग--

टू ऐट ऐट ऐट थ्री सेवन करके सारा डिब्बा में एक एक एक बार लिखा गया है।

और यहाँ पर एक बच्चे का टॉय दिखाई दे रहा है जो आसमानी रंग का है ।

और दो गेट दिखाई दे रहा है एक गेट बंद है और एक गेट खुला हुआ दिखाई दे रहा है।

कोका कोला पी रहा है और साइड में कोका कोला लिखा गया है और सफेद रंग का बिल्कुल--

यह एक टैटू का दुकान है जिसका नाम केबैक्टन टैटू लिखा गया है ऊपर में नंबर दिया गया है।

सेवन ऐट थ्री सेवन टू सिक्स टू ज़ीरो नाइन सिक्स लिखा गया है और--

जिसका पानी सफेद रंग का है और बहोत ही साफ पानी दिखाई दे रहा है।

जो पूजा कर रही है पीले रंग का साड़ी पहनी है और कुछ यहाँ पीले रंग का झोला दिखाई दे रहा है।

पूरे सफेद और लाल में दिया गया है और होटल पे आर_आर_एम_के --

और बहोत सारे घास दिखाई दे रहे हैं और एक ग्राउंड दिखाई दे रहा है।

और इसके हरे-हरे पत्ते दिखाई दे रहे हैं कुछ बाहर निकलते हुए।

साइड में कुछ घास दिखाई दे रहे हैं और बहोत सारा पत्ता दिखाई दे रहा है।

ये एक घर है घर के अंदर एक छोटा सा कैबिन दिखाई दे रहा है।

फूल से सजा रखा है जो गेट बिल्कुल खुला हुआ है।

सामने में कुछ बोतल कुछ पेप्सी का बोतल दिखाई दे रहा है जो सफेद रंग का है।

छोटे से पक्षी बत्तख तैर रहा है जो सफेद--

जिसका रंग केसरिया सफेद हरा में बनाया गया है।

और दो टेबल खड़ा है जिसका रंग काला रंग का है और एक बड़ा सा टेबल है जिसके ऊपर सफेद रंग का--

ऊपर में एक लड़की की तस्वीर है जिसके ऊपर--

और एक सामने में आयना दिखाया दे रहा है।

और बहोत सारे चेयर है जिस पे आदमी बैठे हुए हैं और एक सफेद रंग का टी शर्ट पहने रखा गया है।

जिसके अंदर बहोत सारे मशीन है जनेटर है।

और ऊपर में एक सफेद रंग का पुराना पंखा दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर बहोत ही बड़े-बड़े पत्थर और चट्टान दिखाई दे रहे हैं।

रखा है जो हाथ में फोन लिया है और पीछे में बैग लिया गया है।

दिखाई दे रहे हैं और बहोत सारे विशाल-विशाल लकड़ियां झूल रहे हैं।

और कुछ व्यक्ति जो स्टेज पे खड़े हैं।

ऊपर में एक ए_सी लगा गया जो सफेद रंग का है।

जहाँ पर बहोत सारी चीजें हैं जैसे चॉकलेट --

बगल में फैविकॉल तेल साबुन--

और एक छोटा सा पंखा दिखाई दे रहा है जो सफेद रंग का--

जहाँ पर बहोत सारे फोन रखा गया है।

लिखा हुआ है और एक सफेद रंग का पंखा है।

दिया गया है और एक सामने में कांच का--

और छोटा सा अलमारी दिखाई दे रहा है जो काले रंग का है।